साइड में एल्यूमिनियम का दरवाजा बना हुआ है जिस पर एक कांच लगा हुआ दिख रहा है।

साइड में बहुत सारी मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं और कुछ बगल में पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ दिख रहा है नीचे टाइल्स भी लगी हुई दिख रही है।

और एक बाइक भी खड़ी हुई है और कुछ पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

साइड में एक घर बना हुआ दिख रहा है जिसमें एक जाली वाला खिड़ दीवार बना हुआ दिख रहा है।

यह एक घर का फोटो दिख रहा है जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ दिख रहा है।

कुछ फैन ऊपर लगे हुए दिख रहे हैं दीवार पर सफेद कलर पुता हुआ दिख रहा है।